ये कार है जो कि रास्ते में खराब हो चुकी है। इसको कार का मालिक बना रहा है बनवा रहा है ताकि कार सुधर जाए और वह जहाँ जा रहा है जल्दी से समय से पहुंच पाए।

ये वर्कर कमरे में ड्रिल मशीन से काम कर रहा है यानि ड्रिल मशीन से छेद कर रहा है दे दीवाल के उस पार ताकि कोई सामान डोरी मतलब अंदर उस पार जा सके।